सामने ढाबा नजर आ रहा है टीना का कुछ बना हुआ लाल कलर के बोर्ड में गढ़वाली ढाबा लिखा हुआ नजर आ रहा है।

ग्रे कलर के टेबल और चेयर दिखाई दे रहे हैं।

एक नीले कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

और व्हाइट रंग की दीवाल नजर आ रही है इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

दुकान है इसमें--

मैडम छात्र लोग योगा करते हुए दिखाई दे रही हैं सामने एक येलो कलर की रस्सी दिखाई दे रही है।

दरवाजा दिख रहा है पिलर नजर आ रहे हैं कुछ लाल रंग के बोर्ड में संजय टेलर्स नजर आ रहा हैं बहोत सारे दुकान दिखाई दे रही हैं।

छतरी लगी हुई नजर आ रही है कांच का कुछ बना हुआ है एक बड़ा ग्राउंड नज़र आ रहा है एक पेड़ दिखाई दे रहे हैं खंभा नजर आ रहा है उसमें बहुत सारी वायरिंग नजर आ रहे हैं।

यह मुंडी दिखाई दे रहा है टीना नजर आ रहा हैं नीले कलर का दिवाल है बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

यहां जमीन में भूरे रंग की कार्पेट बिछी हुई है।

साइड की बालकनी दिखाई दे रही है एक बंदा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है गोरे रंग का--

सामने एक काउंटर बना है जिसमें लैपटॉप और दो लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।